यहां एक बड़ा सा हॉल है।

जहां बहुत सारे लोग इस समारोह में इकट्ठे हुए हैं और गुब्बारों से सजा हुआ है तोरन भी लगा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप है। जहां लिखा हुआ है भारत पैट्रोलियम

और यहां एक कस्टमर है जो सामान लेते हुए दिखाई दे रहे है और कैरम बोर्ड की दो--

यहाँ एक कूलर दिखाई दे रहा है। और एक आदमी भी है जो की बेचने वाला है। और यहाँ एक तराजू भी है।

और गुब्बारों से पंडाल सजा हुआ है।

चो चटानो से आ रही हैं।

और यहाॅं बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं और बहोत बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हुई हैं।

यहां बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं और शाम का समय है।

जिसने नीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

काले और नीले कलर का बाइक खड़ा हुआ है आस पास बहुत सारे ऑयल्स के डिब्बे रखे हुए हैं।

और कुर्सियां सजी हुई है और गुब्बारे से हॉल सजा हुआ है।

जहां दो लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और जमीन पर बहोत सारे बोरियां पड़ी हुई है।

यहाँ शॉपिंग मॉल है जहाँ बहोत सारे लाइटे लगी हुए है। और मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं।

यहां एक किराने का दुकान है यहां--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

कुछ लड़के बैठे हैं और कुछ लड़के खड़े हुए हैं।